दूकान लगी है और ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है जिसमे छठ एवं कार्तिक पूर्णिमा के शुब अवसर पर नगर --

छोटे-छोटे पौधों के गोल बने हुए हैं और नीचे लगी हुई है और दूर बहुत सारी--

सामने एक डेक्स बनी है जो सफेद कलर की है जिसके बाहर एक आदमी--

टिका खड़ा हुआ है और एक अन्दर खड़ा है पीछे उसके--

ग्रीन ने ये हरी हरी घास लगी हुई है दूर बोहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है ऊपर नीला सफेद आसमान दिख रहा है।

सामने एक दूकान है जिसमे सटर बंद है जो ग्रीन कलर की है और उपर दीवाल --

सफ़ेद कलर की मंदिर बना हुआ है जिसमें एक मूर्ती दिख रही है और--

साईकल दिख रही है दोनों साईट कुछ दुकाने है उपर नीला आसमान है और पेड़ है।

लगी हुई है साइड में एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है नीचे कुछ पत्ते डले हुए हैं।

सामान रखा है और नीचे कुछ महिलाएं बैठी हुई है सामने दो महिलाएं है जिनके सामने बहोत सारे डले हुए हैं और एक महिला--

पेड़ लगे हुए हैं और तीन मंजिल बनी हुई है गोल।

सामने कुछ मोटरसाईकिल खड़ी हुई हैं जो कोई लाल कोई--

लिखा हुआ है और पीछे दीवाल पे एक बड़ा सा पोस्टर छपा है जिनमे बल लोकेस--

ऐ एं_डी लिखा हुआ है और एक बड़ा टी_वी लगा हुआ है साइड में जिसके साइड में दो पोस्टर और लगे हुए है।

और लाइन से बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं जो सफ़ेद नीली--

काले कलर की है जिसकी साइडो में दीवाल बनी हुई है जिसके ऊपर लोहे की जाली लगी हुई है और एक लाइट वाला खम्बा --

लिखा हुआ है और भी साइड में भी बोहोत कुछ लिखा हुआ अन्दर काच का--

लाल लाइट जल रही है अन्दर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और--

अंदर बड़ी बड़ी मूर्ति और दोनों साइड गमले रखे हुए है जिन में हरे पौधे है साइड में एक आदमी दिख रहा है।

सामने एक पंडाल सजा हुआ है और सामने एक महिला और एक आदमी खड़ा हुआ है जो फोटो खिंचवा रहे हैं उनकी साइड में एक मूर्ति बनी हुई हे है जो पिंक --

और सफेद कलर की है जिसकी साइड में कुछ लाइट रखी हुईं हैं ऊपर रंगीन कलर की--

सफेद आसमान दिख रहा है और इसमे अंदर पानी नीला नीला दिख रहा है और एक गोल टब--

कलर का है और कू ऊपर धुंआ धुंआ दिख रहा है।

दिख रही है और चारो में पेड़ लगे हुए हैं।

और दूर बोहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे है कुछ दुकाने है जिनमे रंगीन लाइट जल रही है कहिओ पिली कही पिंक कलर की लाइट --

की हुई है और एक तखिया रखा है जो सफेद और ग्रीन लाइन वाला है।

सामने एक बड़ा काच रखा हुआ है जिसमें च चारो ओ दोनों साइडो पर निचे पिली पट्टी बनी हुई है और ऊपर दीवाल में घडी दिख रही है दो झंडे--

इसकी साइड में बड़ा सा ग्राउंड है जिसमे निचे हर एक पौधे और कुछ घास लगी हुई है बहोत सारे गमले लगे हुए है सामने--

पोस्टर लगा हुआ है जिसमे श्री राधा माधव मंदिर लिखा हुआ है और ऊपर काला आसमान --

सामने दूर एक दीवाल दिख रही है जो उसके बगल में बड़े खाली कलर का लोहे का गेट लगा है और एक छोटा गेट लगा हुआ है और दोनों साइड दीवाल पर--

की जाली लगी हुई है जिसके उपर बहुत सारे जग टंगे हुए है जो वो कोई पिला हरा और सफेद और ओरेज कलर है उपर--

सामने एक रेल की पटरी दिख रही है जो कथाई कलर की है निचे गिटी डली हुई है और उस साइड किनार उस सड़क पे--

बनी हुई है और लोहे के खम्बे लगे हुए हैं जिनमें--

एक एसरा जमीन में एक टैंक में लगा हुआ है और एक लम्बी डंडी रखी हुई है एक आदमी बेठा हुआ है साइड में एक घर है आगे कुछ पेड़ दिख रहे हैं ।

घर बना है जिसमे एक बड़ा सा लोहे का गेट लगा है जो नीले कलर का है और साइड में छोटा गेट लगा है और वो भी नीला है सामने --